म्युजिक भी बज रहा है म्यूजिक स्टार म्यूजिक बजा रहे हैं।

कलरफुल लाइटें लगी हुई हैं लाल पीले हरे बैलून लगे हुए हैं।

यह पहाड़ी जगह दिखाई दे रही है जिसपर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है पहाड़ों पर घास भी खड़ी--

दरवाजे दिखाई दे रहे हैं पंखा भी लगा हुआ है कुछ शीशे से बनी हुई चीजें हैं।

एक घड़ी रखी है तोलिया रखा है बहुत सारे लाल कलर के ड्रम भी रखे हुए हैं पल्ली रखी हुई--

एक सोनाटा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उस पर ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ--

बहुत सारी कुर्सियां सोफे रखे हुए हैं जो ब्राउन कलर के हैं।

यह एक दुकान लग रही है जिसमें बहुत से थैले रखे है कुछ लोहे का सामान रखा हुआ है।

आदमी ने बिलु कलर का कोट पहना हुआ है ब्लू कलर की टाई लगाई हुई है व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुइ --

टैक रखा हुआ है कुछ पेड़ पौधे भी खड़े हुए हैं कुछ टीचर का मुंह दिख रहा है।